मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पंखे भी लगे हुए है यहाँ पर कुछ बहुत जाड़ा भीड़ भी दिखाई दे रही है।

औ बहुत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे जीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर उनका सीना भी अच्छा डिजाइन से बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हुए भी दिखाई--

यहाँ पर भी एक मंदिर बना दिखाई दे रहा हैयहाँ पर बहुत अच्छी डिज़ाइन से मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर तीन मूर्तिया भी रखी हुई दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छे तरह से।